यहां पर एक बाइक का शोरूम है जहां पर बहोत सारी स्पोर्ट्स बाइक खड़ी हुई है।

और आसपास लोहे की रेलिंग बनी हुई है बाहर की तरफ गार्डन बना हुआ है जहां बहोत ही अच्छे पौधे लगे हैं कुछ खास लगी हुई है।

यह कछुआ पूरे काले कलर का है कहीं कहीं पर यह लाल और ऑरेंज कलर का भी दिख रहा है यह बहुत ही सुंदर है।

आसपास लोग चेयर लगाकर बैठे हुए हैं। आसपास में बहोत सारे गमले रखे हैं और जो पूरा ग्राउंड है--

और सामने ही फुटबॉल का गेम चल रहा है। ब्लू कलर की मैट बिछी हुई है। इस पे बहोत सारे प्लेयर गेम खेल रहे हैं।